यहाँ नीचे सामान भरा हुआ काच के अंदर एक दिखाई दे रहा है एक गेट दिखाई दे रहा।

इस ईमेज़ मे यहाँ फोर लाईन रोड दिखाई दे रहा है एक स्कूटी चलाते हुए यह एक आदमी मुँह मे बांदे हुए--

फल फूलों के पेड़े आम के पेड़े है या बादाम के पेढ़े है और भी यहा अन्य पेड़े लगे हुवे दिखाई दे रहे है यह जामून के पेड़ ही लगे हुवे--

बीच मे यह आसमान दिखाई दे रहा दोनों साइड हरी भरी यह खिलती हुई दिखाई दे रही है बीच मे यह पीपल का पेड़ अ कोपर आते हुए नहीं दिखाई दे रही है और--

सलिया लगी दिखाई दे रही रोड आगे दिखाई दे रहा बोर्ड लगा दिखाई दे रहा मोटर साइकिल खड़ी दि --

ह शटर लगी हुई दिखाई दे रही है बेचने के लिए आदमी दिखाई दे रहे यहाँ सब चीज़े झरनो रखी हुई फुले रखी हुई फुलवार रखी हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ दो माला बहुत सुंदर टंगी हुई दिखाई नीचे फूल फुलवारी खाली खाली ही दिखाई दे रही पोस्टर लगे दिखाई दे रहे दो तीन आदमी दिखाई दे फूल ल--ल और पत्त लगे हुए दिखाई दे रहे यहाँ--

इस इमेज में बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा यहाँ सामान रखे हुए दिखाई यहाँ फुल मालाएं दिखाई दे रहे ड्रम दिखाई दे रहे डूल दिखाई दे रहे।